पिक्चर एक मंदिर का है। जिसका कलर अं पिंक स्काई रेड ग्रीन ब्लू कलर का है।

बहुत सारे टैम्पू दिखाई दे रहे हैं और बाईक साईकिल भी दिखाई दे रहे हैं आसमान भी दिखाई दे रहा है तार भी दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे लाइट के बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं दो इंसान भी दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए।

इसके पीछे बहुत बड़ी झाड़ भी दिखाई दे रहा है बच्चों के खेलने के लिए जंपिंग जम्पाक भी दिखाई दे रहा है ।